व्हाईट कलर --

यह देख के लग रहा है कोई शादी विवाह का फंक्शन है क्योंकि बहुत ही अच्छे से सजाया गया है फूल दे के।

बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की गई है बहुत ही अच्छे से सजाये गये हैं।